इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और यहां बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं।

यहां पे कस्टमर खुद से टोली लेकर अपनी पसंद का सामान ले सकते हैं।

मुझे काफी अच्छा खाना लगा हा काफी अच्छा--

जहां बच्चों को एज्युकेशन दी जाती है।

लोगों की समस्याएं हल की जा।

ये बाल दाढ़ी स्पा एंड सैलून की शॉप हैं।

यहां जेंट्स के बाल कट किए जाते हैं।

वहां से बाल कट करा के लोगों को बहुत पसंद आते हैं।

खुला एरिया है अराम से बैठ सकते है धूप भी अच्छी आती है सब कुछ अच्छा लग रहा--

को मार्केट से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है।